और इसके ऊपर स्टेज के ऊपर कई सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं नृत्य कर रही हैं।

इसमें कई सूट है इसके ऊपर कई गुब्बारे लगे हुए है सफेद लाल कलर के--

इसमे कार भी खड़ी हुई है।

बिल्डिंग है जिसका दरवाजा ऑरेंज रंग का है।

इसके पीछे एक सफेद रंग की बिल्डिंग बनी हुई है।